मंदिर के गेट के इधर ऑरेंज रेड कलर का मंदिर है मंदिर में ती दो गुरुजी बैठे हैं व एक जेंट्स झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे --

यहां एक हॉटल है हॉटल में टू फैन लगे हुए नज़र आ रहे हैं ।

यहाँ एक घर है घर के अंदर फेसियल क्लास है क्लासेस है।

महाराणा प्रताप जी की मूर्ति --

यहाँ पर एक ताजमहल दिखाई दे रहा हैं ताजमहल में स्किन कलर का पेंट हो रहा हैं यहाँ पर दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं और --

रामेस्वरम माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर टिकोरी गया--

यहाँ पर हमें एक मैन मार्केट नजर आ रही है।

यहाँ पर हमें एक बड़ी कपड़े की शॉप नजर आ रही है| यहाँ पर डॉल रखी हुए है।